बहुत सारे सिलिंग फैन है विंडोज है विंडोज पर कांच लगाई गई है। नीचे फर्श पर मार्बल बिछाई गई है।

बहोत सारे मट्टी के घर वर दिखाई जा रही है एक घर दिखाया जा रहा है जिसमें काफी सारे इंटा भी उसमें से दिखाई जा रही है एक आसमानी कलर का गेट है।

एक ब्राउन टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें एक छोटा सा लॉन टाइप का बना दिया गया है और उसके बाहर पर लिख दिया गया है रेड कलर पर पांडा केवयुकेशन।

एक छोटा सा शॉप दिखाया गया है जिसके बाहर पर बोर्ड पे लिख दिया गया--

उनको मॉल टाइप का दिखाया जा रहा है जिसके चारों ओर लोहे के बंद ग्रिल टाइप के घेर दिए गए हैं अंदर में सीट है बैठने के लिए दो तीन आदमी को भी दिखाए गए हैं।

बाउंड्री टाइप का दिखाया जा रा हैं जो कि आसमानी कलर का एक छोटा सा बोर्ड है बोर्ड पर लिक--

और छोटे छोटे पौधे दिखाए जा रहे है बाउंड्री के बगल पर और कुछ बड़े-बड़े से पेड़ वेड़ दिखाई जा रही है घर दिखाया जा रहा है घर की खिड़कियां दिखाई जा रही --

अब्रुकेड कॉलेज एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट पाकिमेल बघहारा--